यहाँ पे कुछ लोग पूजा करने आए हुए है जहाँ की गन्ने का--

पेड़ भी रखा हुआ है यहाँ पे कुछ औरते ओर कुछ बच्चे खड़े हुए है।

यहाँ पे बेलून से सजा हुआ है बेलून का रंग लाल पीला नीले मे है।

यहाँ औरतों ने गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है।

घर के ऊपर एक प्लस का साइन लगा हुआ है जो कि सफेद रंग का है।

घर के ऊपर एक प्लस का साइन लगा हुआ है जो कि सफेद रंग का है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जो की सफेद रंग की है यहाँ पे बहोत सारे एसी लगे हुए है।

यहाँ पे एक साड़ी की दुकान है जहाँ पे बहुत सारी साड़ियां रखी हुई है यहाँ पे दुकान के पास कुछ कुर्सियां भी लगी हुई है।

यहाँ पे एक चार्जर लगा हुआ है।

यहाँ पर एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है जिसका रंग सफेद है यहाँ पर दीवाल का रंग--

इन मे से कुछ का रंग सफेद कुछ का रंग काला है।

यहाँ पे एक आदमी चल रहा है यहाँ पे एक खंबा भी लगा हुआ है।

जिस पे शटर लगा हुआ है शटर का रंग लाल है दुकान के ऊपर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए है।

मंदिर का रंग नीचे से नीला और ऊपर से पीला है।

जोकि चल रहा है यहाँ पे एक घड़ी भी टंगी हुई है।